कार की तस्वीर है एस्केलेटर पीछे है।

बनाई जा रही है। यह उनके डायरेक्टर है नीट की तैयारी करवाते हैं।

यह तस्वीर एक बहोत बड़े कॉम्प्लेक्स की है।

के मैदान में कुछ अनेक वेशभूषा लिए हुए बच्चे--

सामने की यह तस्वीर जिसमें एक कार तथा बाइक रखी हुई है यह एक केबिन की तस्वीर है।

उपस्थित है तथा दो लोग--

यह तस्वीर पहाड़ में नास्ता कर रहे एक--

जिस पर एक कार खड़ा हुआ है।

मारुति सुजुकी कंपनी की यह काम कार है।